पुरुष है खड़ा।

और एगो पोस्टर लगा हुआ है जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है।

यह एक रोड है जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें दो ट्रक दिखाई दे रहें हैं और आगे बहुत सारे गाड़ियाँ रखी हुई है और उसके आगे बिल्डिंग दिख रहा है बिजली के खम्भे दिख रहें हैं।

यहाँ पे एक समुन्दर दिख रहा है जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। नाव पड़े हुए हैं आसमान भी दिख रहा है बहोत सारे चट्टान गिरे हुए हैं।